यह एक जनरल ऑटोमोबाइल जोकि नीचे लिखा हुआ है मारुति ओथोराइज सर्विस सेंटर ।

तो यहां से पानी की सीधी सप्लाई घरों तक की जाती है इसलिए इस टंकी का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।

इस गाड़ी के इंजन मे कुछ खराबी होने के कारण इस गाड़ी की मरामद की जा रही है।

यह एक बहुत ही प्यारी झील नदी है जिसके आसपास में सड़कें बनाई हुई हैं एक सड़क से --

और नदी का पानी काफी ही साफ है लेकिन थोड़ा छिछला नजर आ रहा--

जोकि रात के समय मे भी खुली हुई है यहां पर तरह तरह की मिठाइयां दिखी हुई है।

फेसवॉश इत्यादि सभी तरह के सभी प्रकार के नविया के प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

काफी दुकानें है एक दो तीन चार पांच छे दुकानें दिखाई दे रहे --

काफी उत्साह से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए।

यहां बॉडीगार्ड भी हो सकता है और आपस में घूम रहे हैं खेल रहे हैं।

क्यों क्योंकि यहां पर जानवरों को मारा जाता है।

जहां पर बच्चों के लिए बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए सामान मिलते हैं यहां पर --

चार स्कूटीज रखी हुई है जोकि बेचने के लिए हो सकती है की ये स्कूटीज न्यू हो।

और आस पास छोटी छोटी गलियाँ है।